यहाँ पे एक बेहतरीन जहग है घूमने के लिए हम यहाँ घूम के ताज़ी हवा ले सकते हैं |

ये एक ग्रे कलर का हाउस है और इसमें बहुत सारा विंडोज हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है।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

यहाँ हम जाकर घूम सकते है तस्वीरे ले सकते हैं जो की बहुत ही बेहतर लगेगा ।

जिसका काफी अच्छा डिजाइनिंग एंड लाइटिंग किया गया है।

ये एक पार्क है बगीचा है जो की काफी बड़ा है।

जो की देवी माँ का प्रतिमा है।

और इसमें हर एक समान दिख रहा है जो हमारे डेली यूज में आता है।

ये तस्वीर किसी दुकान की है किराने दुकान की और इसमें --

जिसमें हम सामान लेने के बाद पैसे लेन-देन करते हैं।

और इसमें काफी साइकल्स भी लगे हुए हैं।

ये एक दवा दुकान की तस्वीर लग रही है।

जहाँ पर दो लोग अपने पैसे निकालने आए हुए हैं।